छत भी लोहे के टीन की बनी है।

जिसका रंग ब्राउन है इसको पॉलिश हुआ है।

और छोटे छोटे गमले दिख रहे हैं।

बहुत सारे आदमी भी दिख रहे हैं।

यहां पर आसमान दिख रहा हैं।

यहां पर पेड़ दिख रहे हैं।

कैंपर और प्रेस बनी हुई है ये सब इनके डिब्बे हैं और एक कतली भी दिख रही है।

यह एक शॉप दिख रही है।

स्टैचू को अलग अलग तरह के कपड़े पहनाए गए हैं।

हट में लोग दिख रहे हैं।